लोहे का और रेड कलर की जो पिला दीवाल है उस पे खम्भे बने हुए है।

चारों तरफ से ऊपर अ और शायद से कुछ बड़े-बड़े पर्वत से है --

बगल से कुछ छोटे-छोटे खम्भे साइड से कुछ लोग बैठे हुए है ।

कुछ गाड़ी-घोड़ा है कुछ लोग चल रहे है बड़े-बड़े पेड़-पौधे लगे हुए है ।

और कुछ सुखी की अ घास है कुछ हरी घास है।

और कुछ पेड़ खड़ा हुआ है बगल से--